ढेर सारे बच्चे उम्म यहां पर टीका लगाकर अपना फंक्शन की तैयारियां कर रहे हैं।

हर एक प्रकार की टेबल और अन्य चीजे भी बनाई जाती है इस होटल में मे देख सकते हैं अभी बन रहा है और यहां प बेड को बनाया जा रहा है जिसपे--

जैसा कि आप देख सकते यहां पे तीन टेबलें बनाई गई हैं जैसा आप इमेज में देख सकते हैं यहां पे --

यहां पर सभी लोग मिलकर एक फोटो निकलवा रहे जो बीच में बैठे हुए इनके--

और नए क्वालिटी के बैट बॉल और अन्य चीजें भी यहां पर रखी गई है। जैसा आप इमेज में देख सकते--

भगवान की मूर्ति बैठाई गई हैं जो की अंदर से इस इमेज को निकाला गया है जो की बहुत प्यारा और खूबसूरत लग रहा है।

प्रद दिन से सैकड़ों हजारों श्रद्धालुए दर्शन करने आते है भगवान का--

यह एक मॉल किसी ने जहां पर ढेर सारे प्रकार की बैग जूते कपड़े अन्य चीजे यहां पर मिलते आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारे प्रकार के चीज रखे गए हैं जो कि हर एक लोग प्रति दिन आते हैं इसको खरीदने--